यह एक घूमने का शोरूम है जिसमें नारियल के पेड़ भी लगे हुए--

और ये आदमी और लेडीज भी खड़ी हुई है और लोग आ रहे हैं इसमें लाइटिंग भी लगी हुई है।

और बराबर में सीसे की दीवार भी बनी हैं और दो आमी शामी बैनर भी धरे हुए हैं।

यह एक फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री में चार पाच मशीने धरी हुई है अलग अलग तरीके की और एक गेट भी खुला हुआ है।

यह एक दुकान है जिसमें लकड़ी के बॉक्स बने हुए हैं।

यह एक कार गारेज है यहां पर कार ठीक होती है और इस कार का आगे से बंपर खुला हुआ है।

और ट्रांसफार्मर के नीचे बोर्ड भी लगा हुआ है।

और साइड में पर्दा भी है।

यह एक गेट है और जिसके पास लिखा हुआ है समोट सीट नगर निगम सहारनपुर।

बहुत अच्छा अति सुंदर लग रहा है।

इसमें कुछ लकड़ियाँ भी पीछे पड़ी हुई हैं।

के बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

और कुछ आदमी चलकर आ रहे हैं और एक परचून की दुकान भी है जिसमें कुछ सामान भी है और एक आदमी कुर्सी पर बैठा है।

यह एक बहुत बढ़िया बैंक आउट हॉल है जिसमें कुछ मेजे और कुछ कुर्सियां भी धरी हुई है।

यह एक स्टेज पर चौदह लड़कियां है एक लड़का है।

ये एक अस्टेज है जिस अस्टेज के बराबर में बलूनो का गुड्डा बना रखा है दोनों साइड में--

और थैला भी रखा हुआ है।